चॉकलेटी है और लोहे का स्टैंड बना हुआ है और सामने की दीवाल पीले कलर की है उसमें भी बहोत से रेड --

ऑरेंज कलर की पट्टी बनी हुई है और नीचे काच के गेट लगे हुए हैं जिनमें ब्लैक पट्टी बनी हुई है और--

एक बड़ा सा गुलदस्ता है जिसमें बीच में सफेद लाल और फिर पीले फूल लगे हुएं हैं और हरी पत्तियां ल--

और काली शर्ट पेहरे हुए है कोई सफेद पेहरे हुए है किसी के सर पर टोपी है औ --

परेल के उस साइड पहाड़ दिख रहे हैं जिधर बहुत सारे पेड़े दिखाई दे रहे हैं और बहुत बड़े बड़े खंभे दिख रहे --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

महिला दिख रही है और एक पोस्टर लगा है जिसमें एक आदमी छपा हुआ है और सामने रैक बने हैं जिसमें बहुत--

पोस्टर लगे हुए हैं एक आधा लाल आधा सफेद है जिसमें कारवर्ल्ड लिखा हुआ है और कुछ कारे छपी हुई है ऊपर नीला सा किता--

डर है जो सफेद दिख रहा है और उसमें उपर पीली पट्टी लगी हुई है जिसमे श्री--

और कुछ आदमी बैठा हुआ हैं और एक सामने एक नीला कचरे का ड्रम रखा हुआ हैं जिसकी बगल में लोहे का पाइप लगा --

दिख रही है और सामने घर है जो वो ऊपर पेड़ और पीला सफ़ेद दिख रहा है और--

बच्चा है और रिजेंट की छांव दिख रही है और कुछ पत्थर दिख रहे--

लगी हुई हैं रैखों पर सफ़ेद पोस्टर चिपके हुए हैं और नीचे भी सफ़ेद कलर का--

बैठा हुआ है पुरुष नीला पैंट सफेद शर्ट पहने और मोबाइल डाले हुए है और महिला--